इस तस्वीर में काफी सारे खिलौने दिखाई दे रहे हैं यह खिलौने प्लास्टिक की चिमकी से लगे हुए हैं।

बोर्ड दोनों भाषाओं में है हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी।

लाल है और जो पेड़ पौधे हैं वो काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं।

और एक आदमी बस के ऊपर और बगल में एक सफेद कलर का श--

सामने काफी सारी गाड़ियाँ हैं लोग बैठकर यहाँ बातें कर रहे हैं।

इनमें दुर्गा माँ की मूर्तियाँ हैंवो मूर्तियां बहुत ही आकर्षित लग रही हैं।